अरे भाई यहाँ पर तो जंगल ही जंगल है और तुम ये पत्तियों से क्या तोड़ रहे हो? ये जो सारी पत्ती हरी-भरी हैं।

यार ये पारक कितना अच्छा है और देखो यहां पर बच्चे खेल रहे हैं।

देखो दोस्त ये हमारे स्कूल का बगीचा है और यह बागीचा कितना खूबसूरत लगता है। यहाँ के पेड़-पौधे इसको एक अलग ही ख़ूबसूरती देते हैं।

यहां ड्राम रखे हुए हैं इन ग्रामों में पानी है।

ये रही कार की दुकान और ये उस कार का पंचर भी ठीक कर रहे हैं। इस कार में पंचर हो गया और ये कार होंडा की है और ये कार ब्लैक कलर में है ब्लैक शेडिंग --